ये जो एक रूम है और रूम का अंदर में जो एक टेबल दिखाई दे रहा है।

एक लैपटॉप भी है और पीछे में जो कुछ बोतल भी दिखाई दे रहा है कुछ बैलून भी टांग के रखा हुआ है।

पीछे में जो है बहुत जरा पहाड़ पहाड़ दिखाई दे रहा है कुछ पेड़ पौधा भी दिखाई दे रहे है।

ये जो एक रूम है रूम के अंदर में जो एक टेबल दिखाई दे रही है।

पेड़ पौधा दिखाई दे रा है वो भी ग्रीन कलर मे है।

आसमान में जो बहुत ज्यादा बादल है और घर का सामने में जो बहुत जरा आदमी लोग भी दिखाई दे रहा है।

और तीन लड़की का चेहरा अभी दिखाई नहीं दे रहा है और जो कुछ पेंटिंग शो कर रहा है।

पेंटिंग जो एक घर का और एक नारी और ब्रिज का पेंटिंग है और उसमें जो है एक पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

वो लोग के पीछे में जो एक घर है घर में जो दरवाजा भी दिखाई दे रहा है वो जो बंद करके रखा हुआ है और कुछ पोस्टर भी है।

और उसका सामने मेज कुर्सी और चेयर भी है चेयर का कलर जो ब्लैक में दिखाई दे रहा है।

में जो बहुत ज्यादा कैंडल दिखाई दे रहा है कैंडन भी एक एक पोज का ऊपर रखा हुआ है।

ये जो एक स्टेज है और स्टेज का अंदर में जो तीन लोग बैठा हुआ है।

और ये हमे जो कुछ शीशा का दरवाज़ा दिखाई दे रहा है और उसका अंदर मे जो ज्यादा समान रखा हुआ है।

ये जो एक डूम है और डूम का अंदर में जो एक अलमारी जैसा दिखाई दे रहा है।

यहां में एक घर दिखाई दे रहा है और घर का अंदर भी बहोत ज्यादा चेयर भी रखा हुआ है।

बहुत ज्यादा प्लास्टिक भी है कुछ कपड़ा भी टांग के रखा हुआ है एक पोस्टर भी दिखाई दे रहा है।

दो आदमी का दिखाई दे रहा है वो लोग जो अलग अलग कपड़ा पहन रखा है।

यह हमें जो एक ग्राउंड दिखाई दे रहा है और ग्राउंड का अंदर में जो कुछ लोग खेलके दिखाई दे रहा है।

और उसमें जो कैफे रेस्टोरेंट लिख के है और उसका अंदर में जो बहुत ज्यादा सामान दिखाई दे रहा है।

और वहां में जो एक दरवाजा भी है और वो भी जो खोल के रखा हुआ है।

एक बाल्टी भी है एक फ़्रीज दिखाई दे रहा है वो जो ब्लैक कलर में है फ्रीज के ऊपर में भी कुछ बॉटल दिखाई दे रहा है और कुछ कार्टून भी दिखाई दे रहा है।

उसका सामने में जो एक स्ट्रीट लाइट है उसमें जो कुछ सोलर प्लेट भी दिखाई दे रहा है।

एक बड़ा सा भी है उसमें जो कुछ तार भी दिखाई दे रहा है।

यहां में जो कुछ लोग बम फोर के दिखाई दे रहा है और वो लोग जो उसका सामने में बैठा हुआ है।